सामने की ओर बहुत लोग दिख रहे हैं अंदर सफेद दिख रहा है दीवार सफेद दिख रहा है।

यह तस्वीर मे बहुत झूला दिख रहा है झूला बहुत सारा दिख रहा है।

बहुत गाड़ी दिख रहा है आसमान से प्रकाश आता दिख रहा है ।

इस तस्वीर में पानी बहता दिख रहा है ।

कुछ छोटा-छोटा पेड़ दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत टेबल दिख रहा है।

एक बॉक्स रखा दिख रहा है भगवान की मूर्ति रखी--

इस तस्वीर में सीढ़ी दिख रहा है।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

में पानी दिख रहा है पीछे दीवार दिख रहा है।

तस्वीर में औरत है।

नदी है औरत के हाथ में सूप है।

लड़का लटका है बहुत अंधेरा है ।

तस्वीर में पानी दिख रहा है पानी सफेद दिख रहा है दो बत्तक दिख रहा है बत्तक तैर रहा है पानी बहुत ज्यादा दिख रहा है।

इस तस्वीर में बहुत पानी दिख रहा है ।

बहुत झूला दिख रहा है आसमान सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है सड़क पर दो लड़का दिख रहा है।

बहुत लोग दिख रहे हैं कुछ लड़का दिख रहा है।

एक बेड दिख रहा है बेड पे सफेद चादर बिछा है।

सामने पर्दा दिख रहा है एक टीवी दिख रहा है दीवार सफेद दिख रहा है।

कुछ पोस्टर दिख रहा है पोस्टर लगा दिख रहा है।

तस्वीर में एक लड़का दिख रहा है लड़का बैठा दिख रहा है लड़का के हाथ में मोबाइल दिख रहा है।

एक ड्रॉवर दिख रहा है ड्रोवर सफेद दिख रहा है।

पीछे दीवार दिख रहा है दीवार सफेद है।

बहुत तस्वीर दिख रहा है दीवार पर तस्वीर टंगा है ।

पीछे सफेद दीवार दिख रहा है दीवार में काला तस्वीर बना है।

तस्वीर में एक कमरा दिख रहा है।

सामने एक दरवाजा दिख रहा है कुछ लड़का दिख रहा है कुछ लड़की दिख रही है ।

कुछ लोग लाल टी-शर्ट पहना है हरा पेड़ दिख रहा है।

में दीवार दिख रहा है बहुत लोग दिख रहा है।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

रेलिंग दिख रहा है दीवार पे बड़े अक्षरों में कुछ लिखा है आसमान सफेद दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक सड़क दिख रहा है।

सड़क किनार बहुत दुकान दिख रहा है।

हरा पत्ती दिख रहा है दुर्गा देवी मंदिर दिख रहा है।

दीवार पे माता का तस्वीर दिख रहा है।

इस तस्वीर में एक बेड दिख रहा है बेड सफेद दिख रहा है।

पर्दा टंगा दिख रहा है पीछे दीवार दिख रहा है।

दीवार पे तस्वीर लगा है दीवार का रंग नीला दिख रहा है।

बहुत लोग दिख रहा है सभी लोग खड़ा दिख रहा है।

इस तस्वीर में हरा घास दिख रहा है एक रास्ता दिख रहा है बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है।